कुछ लोग है मतलब बहुत सारे लोग हैं कुछ बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैँ और वहा पर आगि जल रही हैँ।

वहां पर दो अंकल और आंटी खड़े हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं वहां पर और आसमान दिख रहा है।

काफी बड़ी बैंक है बैनर वगेरह लगे हुए है।

एक ग्राउन्ड है ग्राउन्ड मे अ कुछ लोग बेठे हुए है चेयर पे कुछ लेटे हुए है ऑर कुछ--

कुछ खड़े हैं कुछ बातें कर रहे हैं और वह पत्थरों का है पूरा मंदिर--

एक बैंक है बैंक के बाहर लिखा हुआ है बैंक और सटर लगी हुई है।

हाँखेत टाइप वहा से आधा सूरज निकल रहा है और पुरा खुला आसमान दिख रहा है और ब्रिज --

यहाँ पर बहुत सारी फिश राखी हुई है शॉप है जिसमें कुछ एम ह अंटीया भी है बेटी भी है कुछ ले रहे हैं कुछ बेच रहे हैं।

अहः रोड है वहा पर ऑटो खड़े हुए है बहुत सारी बस खड़ी हुई है काफी सारी गाड़ी काफी सारी शॉप वगैरा दूकान वगैरा बनी हुई है।

एक रोड हैं ग्राउन्ड टाइप मे हैं वहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

रेत पडी हुई हैं काफी सारे लोग हैं कुछ खड़े कुछ गाड़ियों पे खड़े गाड़ियां रखी हुई हैं पूरा आसमान दिक रहा हैं कुछ पेड़ वागेरा भी लगे हुए हैं ।

काफी सुनसान सा रोड है ओर वहां पर आसमान दिख रहा है पुरा।